यहा पर एक तीन मंजिला इमारत दिखाई दे रही है जिसमे बिच मे चोकोर आकार मे नीले रंग का कांच बनाया गया है इस इमारत की छत पर दो तीन डी_टी_एच लगे हुए दिखाई दे रहे है।

के ग्लास लगे हुए है ओर बिल्डिंग के नीचे व्हाइट कलर की वेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है ओर एक ब्लैक बाइक भी खड़ी हुई नजर आ रही है इस बिल्डिंग मे सामने नीले रंग का बडा सा गीट भी लगा हुआ है।

यह पर एक दुकान दिखाई दे रही है जो की रोड के ठीक बगल मे बनी हुई दिखाई दे रही है ये दुकान प्लास्टिक के समान की दुकान है इस दुकान के अंदर कुछ गुब्बारे भी लगे हुए दिखाई देरे देखने मे ये दुकान बिल्कुल नई लग रही है।

एक बाद सा इलेक्ट्रिक शोरूम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रिक सामान रखे हुए है टिरी दीवाल पर टी_वी लगी हुई दिखाई दे रही है जो की हर साइज़ की उपलब्ध दिख रही है नीचे की तरफ काफी सारी अलग अलग तरह की वॉशिंग मशीन ओर अलग तरह के फ्रिज है।